यह एक शॉपिंग मार्ट का फोटो है जिसमें पारले बिस्कुट --

यह एक शंकर भगवान की मंदिल का फोटो है।

और मंदिल के अंदर एक बड़ा सा--

बहुत से व्यक्ति गुब्बारा लिए हुए फोटो में दिखाई दे रहे हैं।

छाया दार पर्वत का फोटो भी--

और बैठे हुए नजर आ रहे हैं और एक बच्चों के लिए--

चश्मा लगाए हुए फोटो में दिखाई दे रहा है।